तीनों चारों लड़कियों एक साथ सेम डांस कर रही हैं तथा इन सभी का एक हाथ ऊपर व एक हाथ नीचे है।

तथा पास में कुछ बाइक व स्कूटीयां दिखाई दे रही हैं कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

वे कपड़ो के प्रेस करने वाली स्त्री वो जो डिब्बों मे पैक है तथा बाल सूखाने वाला --

थेयर येयर भी पड़ा हुआ है तथा कुछ लाइटे रखी हुई है ऊपर की तरफ का उपयोग --

इस फोटो में पीछे की तरफ घर दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

तथा सामने की तरफ कुछ बड़े पेड़ लगे हुए हैं तथा पास में छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं तथा उस --

तथा इसके ऊपर रेस्टोरेंट फास्ट फूड नाम भी लीखा हुआ है जो शिशे पे लिखा हुआ है।

तथा एक इंच अंदर की तरफ कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं तथा कुछ छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है तथा सामने की तरफ --

इसमें दो चार लकड़ी के काउंटर बने हुए हैं तथा शीशे के खांचे बने हुए हैं जिसमें कपड़े रखे हुए --

सामने कुछ छोटे घर दिखाई दे रहे हैं तथा एक गाड़ी जा रही है।

जिनके अंदर सामान रखा हुआ है तथा दो लाल कलर की कुर्सियां पड़ी हुई है।